बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें यहां प--

इस फोटो में हमें यहां पर ये--